यख मा जी एक रोड छा रोड का किनारा कई सारी गाड़ी लगीं छन कुछ कारी छन कुछ कारी छन यख मा जी भी चम सड़क का मैदान भी छा हरयूं भरयूं।

सामने जी झील छा झील का उंडे फंडे कई सारा पहाड़ भी छन यख मा जी एक सफ़ेद रंग की सिंटेक्स भी छा।

यख मा जी लाइट भी छन लगीं कुछ स्टार भी छन बणाया यख मा कई सारा लोमरू भी छन झाड़ीयों मा जी यख मा पर्दा भी छन।

यखमा जी एक बाट्टू छा बाटा का उणे फणे रेलिंग छन भीड़ छन हुई यखमा जी भीड़ो मा जी कई सारा पौधा हुंया छन लुंगला उग्या छन।

ये कच्चा रोर एक रेगिस्तान चा रेगिस्तान मा जी ऊट चलदा छन यखमा जी बिच्चम छुट्टी छा आगे जगा हरी भरी घास छ उगी सामणी मा जी कुछ मकान भी छन दिखेण लग्या।

सामने मा जी सुख्यां डाला भी छन कुछ कुछ हरयां भरयां डाला भी छन आसमान भी छा नीलू च आसमान।